यहाँ हमें एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

झाड़ और आसमान भी नज़र आ रहा है।

घास भी नजर आ रही है।

बाल्टी और झाड़ भी दिख रहे हैं।

यहां हमें एक स्टेज दिख रहा।

टेबल और कुर्सी भी नजर आ रही है।

एक स्टेज बना हुआ दिख रहा है।

यहां हमें एक कपड़ा दिख रहा है जो गुलाबी कलर का है।

यहां हमें बहोत सारे झाड़ दिखाई दे रहे हैं।

बहोत सारे थंबे भी लगे हुए--

और आसमान और झाड़ भी नजर आ रहा है।

यहां व्हाइट कलर की दीवाल दिख रही है।

बिल्डिंग में ग्रीन कलर से ग्रीन कलर का एक बोर्ड हैं।

अलग अलग तरह की बोटलें रखी हुई है।

और पाउच रखे हुए दिख रहे है।

कई घर भी दिख रहे हैं।

यहां बहोत सारे कबाड दिख रहे हैं।

सभी कलर के कपड़े दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यहां हमें एक दीवाल दिख रही है।

दीवाल पर बहोत सारी फोटोज लगी हुई दिख रही है।

और रस फायर इंजीनियर्स लिखा हुआ--

और नीले कलर और वाइट कलर का दिख रहा है।

ब्लू कलर के तकिए दिख रहे हैं और ऑरेंज भी कुछ है।

यहां हमें कई झाड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां हमें एक मंदिर दिखाई दे रहा है।

मेले की चकडोल दिख रही है।